यह एक पार्लर है। पार्लर में दो कुर्सियां रखी है और एक शीशा है सामने कई क्रीम रखी हुई है।

का पेंट किया हुआ है और सामने--

वहीं वैक्स वाली डिब्बीयाँ भी रखी हुई हैं ब्लैक कलर की कुर्सियां है और एक ड्रायर भी रखा हुआ है।

अभी पेड़ पौधे दिख रहे हैं आसमान भी दिख रहा है एक बिजली घर भी है ट्रांसफॉर्म है और एक--

ये एक ग्राउंड है ग्राउंड के अंदर दो वाइट कलर की कार खड़ी हुई है।

और एक छोटा हाथी है और इसके चारों तरफ--

मैदान में एक अहूजा सीमेंट का बहोत बड़ा गोदाम सा बना हुआ है गोदाम के ऊपर येलो कलर का पेंट किया हु--

खिड़कियां हैं इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आदमी का पोस्टर भी लगा हुआ है मैदान के बाहर एक पानी की टंकी दिख रही हैं।

सारी जनानियां हैं आदमी ढोल सा बजा कर जा रहे हैं जनानियों ने सिर पर--

आदमी के पैरों में चप्पल नहीं--

ऑफिस के अंदर लाल कलर के तीन कुर्सियां रखी है जो उस पर अभी पॉलिथीन --

सड़क पर एक लड़की यूनिफार्म पेहन कर जा रही है और उसके सड़क पर एक साइड पर घास-घास भी लगी हुई है।

यहां एक साथ में एक दो तीन घर--